पानी उसमें शायद आ रहा होगा यहां पे एक वाइट कलर का पाइप सा लगा हुआ है।

यह एक स्कूल की तस्वीर है उस स्कूल का नाम द ब्रिटिश स्कूल है यहां पे टेंट लगा हुआ है।

और यहां कुछ आदमी हैं जो--

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके सामने में एक कार खड़ी हुई है।

स्टैचू रखा हुआ है वहां सामने दीवार पर स्विच बोर्ड लगे हुए हैं और तीन तस्वीरें टंगी हुई है।

और जिसमें बहुत सारे लोग हैं।

में छतरी टाइप कुछ लगी हुई है और ऊपर बिल्डिंग पे कुछ लिखा हुआ--

साइड में कुछ अलग सा समान रखा हुआ है।